यहाँ पर बहुत सारे पर्दे दिखाई दे रहे है और बहुत सारे गेट दिखाई दे रहे है और दिवालो पर व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है ।

और अ लाइटे दिखाई दे रही हैं और गमले दिखाई दे रहे है खुरसियाँ दिखाई दे रहा है डस्टबिन दे रहा है।

जोकि दो लोग बोहोत भींग कर आए हुए हैं गुलाबी रंग से खेल कर आए हुए हैं।

यहाँ पर एक सैलून दिखाई दे रहा है और बलूनो उस बैलून से सजाया हुआ है। रेड और ऑरेंज बैलून से सजाया हुआ है जोकि देखने में बोहोत ही सूंदर दिख रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और रोड दिखाई दे रही है और आस-पास में घर दिखाई दे रहे हैं जो की घर बहुत बड़े-बड़े हैं |

बच्चे लोग मैच खेल रहे हैं और कोई बॉलिंग कर रहा हैऔर कुछ लोग बैटिंग कर --

एक आदमी के पैरो पर लगा हुआ है वो दिख रहा है जो कि बहुत ही लगा हुआ है दोनों पैरो में --

पेड़ दिखाई दे रही है और पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो की बड़े-बड़े हैं जो कि बच्चे लोग बैठे हुए हैं पत्थरों पे और औरतें लोग भी पत्थरो पे बैठी हुई --